बच्चे है एक बच्चे उस झुलवे में झूल रहे है मज़ा ले रहे है।

जिसमे बॉल भी लटके हुए है ओर इसमे दो डब्बे सब पड़े हुए है।

ये एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक मंदिर दिख रहा है।

जिसके अंदर जाने के लिए सब लोग लाइन मे लगे हुए है।

और आगे बर्तन बासन भी पड़े हुए है।

ये एक खूबसूरत घर है जिसके घर अंदर बहुत ही सारे देवी-देवताओ के माले फोटो रखे हुए है।

और चारों तरफ कन्या अपने हुनर दिखा रहे हैं बहोत ही खूबसूरत अंदाज है इनकी रंग-बिरंगी साड़ियां बहोत ही अच्छी लग रही --

ओर जिसकी मोटर साइकल है वो बेठे हुए है नीचे जमीन दिख रही है और ऊपर बल्ब लगे हुए है गेराज बड़ी खूबसूरत दिख रही है।

बहुत ही खूबसूरत प्लेन है। इनडीगो की प्लेन है। ऊपर आसमान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है नीचे की फ्लोर बहुत ही प्लेन --

और मच्छी भी बहुत ही बड़े-बड़े दिख रहे है।

ये एक सेलून है जिसके अंदर ठाकुर एक बच्चे की बाल कट्टींग कर रहे है और दुसरे बच्चे उसे देख कर मुस्कूरा रहे है।

ये एक खूबसूरत नदी है जिस नदी के पूल के ऊपर एक लोग आराम से खड़े हुए है और उस नदी को देख रहे है।

यहाँ कुछ मंदिर जैसी बनी हुई है और उसके आगे एक डेजर्ट सफारी भी लगी हुई है।

और वहा पे दो मोहरे भी लगे हुए है और बहुत ही खूबसूरत घर दिख रहा है उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लजीज रंग किए हुए है।